--जो की बारह और पीछे भी कांच लगे हुए है और ये स्टूल भी बैठने के लिए है एक नंबर बे व्यवस्था है बैठने के लिए।

एक आदमी है यहाँ पर अ ब ब कुछ पहने हुए सफारी सूट -सा पहने हुए कुछ लेक्चर दे रहा है एक बगल में कुछ प्याजों टाइप का बजा रहा है।